व्हाइट शर्ट वाला जा रहा है साइकिल है बाहर बिल्डिंग लगा हुआ हरा-भरा पेड़े है इसके बगल में मकाने है।

वाइट कलर से रंगा हुआ है लोहे का बहुत सारे जिम मशीन हैं।

इ नर्स है एक डॉक्टर भी ठड़ा है कचरा का डब्बा रखा हुआ है।

योगा बहुत सारे लड़के लड़कियां योगा कर रहे हैं लड़किए हैं।

खुला मैदानी में बहुत बड़ा मकान है खुला मैदान है हरा-भरा बहुत सुन्दर-सुन्दर।

सुन्दर दिख रहे हैं बादल च्छा है।

एक पोल लगा हुआ है उसके बगल में कलर से कलर किया हुआ है लाइट जल रही है।

एक सैलून में तीन कुर्सियां लगा हुआ है एक शीशे में --

बड़ा हरा-भरा पेड़ें भी हैं फिर मकानें भी दिख रहें हैं।